इस इमेज में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ मंदिर बहुत बड़ा है मंदिर --

रखी हुई हैं और इ-इस गणेश जी के पीछे का डेकोरेशन बलून से किया गया है।

इस इमेज में मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे टेबल और चेयर्स मुझे दिख रहीं हैं।